मुझे इधर येलो कलर की फुल भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर सफेद रंग के फूल दिखाई दे रही है।

साथ में मुझे एक पिंक कलर की फूल भी नजर आ रहे हैं।

मुझे इधर येलो कलर की--

आमने बहुत सारे इंसान भी मुझे नजर आ रही है।

घर के सामने छोटे छोटे घास फूस भी नजर आ रही हैं।

इधर मुझे दो फैन दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर एक इंसान खड़ा हुआ भी नजर आ रहा है।

इधर मुझे बहोत सारे मूर्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

सामने दो बड़े टेबल भी नजर आ रहे हैं।

मुझे इधर दीवार पर कुछ शब्द में लिखे हुए भी नजर आ रही है।

मैदान में मुझे एक लंबा सा पेड़ भी दिखाई दे रही है।

मुझे इधर एक बड़ा सा पेड़ नज़र आ रही है।

घर के सामने मुझे पेड़ पौधे भी नजर आ रही हैं।

मुझे इधर बहुत सारे बेंचेस और चेयर्स भी नजर आ रही है।

दरवाजे के ऊपर कुछ नंबर्स और शब्द में लिखे हुए भी नजर आ रही है।

मुझे इधर खीरा भी नजर आ रही है।

मुझे इधर एक मंदिर दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पूल के आसपास मुझे छोटे छोटे से घास भी दिखाई दे रही है।

इधर बहुत सारे बेंचेज और डेस्क भी नजर आ रही है।

मुझे ये गाड़ियों के पीछे बहुत सारे लोहे भी नजर आ रहे हैं।

मुझे इधर तीन लाइट बल्ब भी दिखाई दे रही है।